एक हॉल है और तू कम भी दिख रही है ।

एक सड़क है उसपे दो कार दिख रहे दो तीन कार दिख रही है --

और इसके ऊपर गोल-गोल कुछ दिख रहा है।

और नीचे कुछ पत्ते वगेरा से कुछ है और बाजू में गाड़ियाँ भी खड़ी है।

के झाड़ नजर आ रहे हैं और नीचे काला-काला और पानी भी दि --

इधर एक नदी दिख रही है और उसके ऊपर पुल भी बना हुआ है ।

पुल पर कुछ लोग चल रहे हैं।

और यहां बहुत सारे खंबे भी दिख रहे हैं ।

और एक झूला भी ढला है और तीन खम्बे दिख रहे है और दो --

और उसके पीछे बहुत घने पेड़-पौधे लगे हुए हैं ।

और आसमान भी दिख रहा है और नीला नीला को --

यह टेबल पर तो प्लेट में खाना रखा हुआ है --

और उसमें दो चम्मच वे लगी हुई हैं ।

इधर एक नदी दिख रही है और उसके बीच में --

और एक छोटा सा पेड़ भी दिख रहा है और ऊपर नीला-नीला काला-काला आसमान भी दिख रहा --

इधर एक स्विंग पुल दिख रहा है और उसमें कुछ लोग भी दिख रहे हैं ।

यह एक कब्रिस्तान दिख रहा है और उसमे काले काले कुछ डिब्बे टाइप के दिख रहे है।

इधर एक झरना दिख रहा है और उसके चारों और --

और अ सफेद आसमान भी दिख रहा है और --

यह एक घर है और उसके आगे एक --

और पीछे कुछ काला-काला भी दिख रहा है और ऊपर भी काला-काला कुछ दिख रहा।

और उस पर कुछ लिखा हुआ है और उसके आगे एक छोटा सा खंबा लगा हुआ है और उस पर लाल पट्टी --

नीला सफेद आसमान दिख रहा है और इससे।

रखी हुई है और दो पीछे खम्बे --